बहुत बड़ा ग्राउंड हैं ग्राउंड के बगल में घर बने हुए है लाइटें जल रही है।

और कुछ नहीं दिख रहा है बहुत एंड बहुत ही पुराना है।